कॉम्पीटिशन एग्जाम के लिए --

ये एक स्कूल के प्रयोगशाला का कक्ष हैं जहाँ पास बच्चे लोगो को प्रयोगशाला में--

सथित है जहाँ पस लोग अपना फ्री टाइम को युटीलाइस करने के लिए आते है।

वाहन आ चुके है जिसके कारन रिक्शा को रिप्लेस किया जा रहा है।

पता चलता है कि इस छेत्र में प्राचीन समय में सभ्यता का विकास बहोत ही अच्छे ढंग से हुआ होगा।

इस चित्र में एक मस्जिद को दिखाया गया है जहाँ पास मुस्लिम धर्म के लोग--